कि वार्डन जैसा बनाया हुआ है और यहां पर हरी हरी घांस भी लगी हुई है।

और नीचे जमीन पर कारपेट जैसा है नीला और ऑरेंज कलर का--

और सड़क के दोनों साइडों पर--

एक टेबल के ऊपर दो सिस्टम पड़े हैं कंप्यूटर --

सा बीच में कुछ डी_जे जैसे भी पड़े हुए हैं।

दो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगे हैं।

सामने बहोत बड़ा गार्डन --